यह एक किराने की दुकान है। यहां पर सामने--

यह एक आसमान का तस्वीर है।

यहां ऊपर की तरफ ऐसे पत्रों जैसे व्हाइट कलर के लगे हुए हैं।

यहां पे काफी तरह की लाइटें जल रही है।